दिखाई दे रहा है इस लंबी कतारों मे बेंचें लगी हुई है मॅडम सर बैठे हुए दिखाई दे रहे है लाल कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे है कुछ सामान रखे हुए है।

इसके बीच मे आदमी चेअर पर बैठा हुआ है। और एक मैडम या चेअर पर बैठी हुई है। एक मे स्टूल रखा हुआ है। लकड़ी की रॅक बना हु उस लकड़ी मे कुछ निकालती हुई आ रही है। टका डरा हुआ है सामने बॉटल रखी दिखाई दे रही है।

और शानदार कमरा दिखाई दे रहा है और ए सिने लाल गुलाबी पीले हरी रंग के इसमे फूल लटके हुए है।

सामने ए नीचे लगा हुआ है और उस बीच मे कुछ आदमी दिखाई दे रहे है कुछ मालाए परदे गुलाबी लटके हुए है सामने दो जेन्ट्स और लेडीज खड़े हुए है दिखाई दे रहे है।

यहा पूरे से अच्छा सजा हुआ है। लाल गुलाबी और काले कलर की फुग्गे लगे है। जिम की मशिने रखी है। वो आदमी कु्छ जिम करते हुए दिखाई दे रहे कु्छ आदमी साइड बैठी हुए दिखाई दे रहे है।

एक अति सूंदर सूंदर नज़ारा दिख रहा है जयपुर एक नज़ारा है इसे अलग प्रकार के फूल लगे हुए है लाल गुलाबी पीले कलर की फूल दिखाई दे रहे सामने तीन औरते एक जेन्ट्स खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक मुरा सफ़ेद कलर का पेंट और नीले कलर का हुआ दिखाई देगा नीचे गद्दी बिछी है।